यहां पे गाड़ियों का सर्विस किया जाता है।

यहां पे हर बस के कंडक्टर खड़े हैं और यात्री को बता रहे हैं कि कौन सी बस कहां जाने वाली है।

सामने के तरफ एक टी_वी भी लगाई गई है।

यहां पे कुछ लोग कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं।

डब्बे हमें चारों तरफ अलग अलग मॉडल के सजाए हुए दिख रहे हैं कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं और दुकानदार से फोन के बारे में--

जा रहे हैं। अंदर के तरफ यहां पे एक बहोत बड़ा पे--

यह एक गोडाउन है यहां पे कुछ झाड़ियां उगी हुई है जो गोडाउन के ऊपर तक चढ़ चुकी है।

युवक हैं जो यहां पे खड़े होकर तस्वीरे खिंचवा रहे हैं।

जहां पर बड़ा सा पोस्टर पर बैंक ऑफ़ बडौदा लिखा हुआ है।

यहां पे एक पंखे को भी लगाया गया है।

बीच में फाउंटेन बनाया गया है।